कारखाना दिखाई दे रहे हैं उनसे बड़ी - बड़ी चिमनियाँ निकली हुई हैं साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

छवि में दो वर्कर्स दिख रहे हैं। वो कुछ बना रहे हैं। एक आदमी बैठा हुआ है और दूसरा आदमी नीचे बैठकर कुछ कर रहा है।

कंस्ट्रक्शन साइट पे दो वर्कर काम करते हुए दिख रहे हैं। एक वर्कर ने नीले रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट पहनी हुई है।

अभी बहोत सुंदर दिख रही है। किसी ने बहोत इतमिनान से इसको उठाया है। काले बादल थोड़े से छाये हुए है और नदी में --